और वहां पर आसमान भी दिखाई दे रहा है जो की बिल्कुल व्हाइट कलर का नजर आ रहा है।

एक लाइट भी नजर आ रही है और दीवार के ऊपर एजुकेशन लिखा हुआ है।

ये गुरुद्वारा नजर आ रहा है जोकि बाइट कलर का है बहोत सी बिजली की तारें नजर आ रही हैं।

पूल के बाहर भी खड़े हैं बहुत से खिलौने गाड़ियां वगैरह हैं और वहां पे पेड़ भी बहुत ज्यादा हैं।

बेंच चौकी रेड कलर का है और पास मे पेड़ है और गेट नजर आ रहा है जोकि ब्लैक कलर का है।

और एक पत्थर के ऊपर बैठा आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं।

व्हाइट कलर की बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे नज़र आ रही हैं।

वहां पर और एक झूला भी दिखाई दे रहा है वहां पे डस्टबिन पड़ा हुआ है सिल्वर कलर --

पिंक कलर की शर्ट डाली है और ब्लू जींस डाली है और एक चप्पल पांव में चप्पल डाली है।

और वहां पर ए छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं बड़े से--

और एक मीटर भी लगा हुआ है और एक रेड कलर का एक बोर्ड लगा है।

जो लाल रंग के हैं और टेबल भी पड़े हैं एक छोटी सी बच्चे की साइकिल पड़ी है।